सामने में देखा पा रही हूं की रोड है। रोड के किनारे काफी सारे बाईकें खड़ी हैं और रोड के आजू-बाजू में बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं और बहुत बड़े-बड़े घर हैं।

और हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं अगल बगल में और यहां पे बहोत ही साफ सुथरी है रोड ।

और अगल बगल में भी दुकान है एक एस_बी_आई बैंक है जहां पे काफी भीड़ है।

और एक बड़ा सा मशीन रखा हुआ है और बहोत सारा औजारे रखे हुए है और यहां पे काफी लोग खड़े हैं और --

और मोबाइल तरह तरह की रखी गई हैं और यहां पे बहुत सारा लाइट लगे हुए हैं और नीचे के फर्श भी।

टाइल्स का लगा हुवा हैं बहोत साफ सुथरा है और बाहर का गेट दिख रहा है और गेट कांच का लगा हुवा है।

सैंडल देख रही हूं सैंडल का फोटो है और सैंडल बहुत ही सुंदर है ब्लैक कलर का है और यहां पे जूते सैंडल हर तरह के सैंडल --

और यहां पे ग्रुप में लड़कियां कुछ है जो नाच रही है और डां प्रोग्राम कर रही है दिखा रही है सबको और काफी भीड़ लगी हुई है।

और यहाँ पंडाल में किरण गाड़ी बना हुआ है और वो पौधे उखाड़ रहा हैं और अगल बगल में काफी भीड़ लगी हुई है और सभी देख रहें हैं।

सामने मैं देख पा रही हूं बड़ा सा पार्क है पार्क के बाहर में बड़ा गेट लगा हुआ है और गेट बहुत ही सुंदर है जो कि लकड़ी का बना हुआ है यहां पे--

सामने मैं देख पा रही बहुत बड़ी टंकी बनी हुई है टंकियों में अह बहुत सारे पानी रखे हुए हैं और यहां पे--

एक बड़ा सा शोरूम है गाड़ियों का जहां पे काफी सारी चार पहिया खड़े हैं और अलग अलग ब्रांड के है और अलग अलग डिजाइन के है।

बहुत बड़ा शोरूम है और यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं नीचे जो फर्श है वो टाइल्स का बना हुआ है और यहां पे दिन का समय है अभी।

सामने मै देख पा रही हूं कि बहोत बड़ा वाटर पार्क है वाटर पार्क में काफी सारे झूले लगे हुए हैं।

सामने मैं देख पा रही एक रोड दिख रही है रोड के किनारे किनारे बहुत बड़े बड़े जंगल हैं और दूसरे साइड में एक बड़ा सा पार्क है पार्क के--

ये पार्क में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और इस पार्क के आगे बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है जो की रोड के पास ही है।

बहोत सारा औजार भी रखे हुआ है ऑल रखा हुआ है और यहां पे बहोत ही छोटे छोटे बाल्टीयों में भी कलर --

और रोड के किनारे बहोत सारे साइकिलें खड़ी हैं बाईकें खड़े हैं स्कूटी खड़े हैं।

और लाल फुल है गुलाबी गुलाब के फूल है और यहां पे वरमालाये भी बनाई गई है काफी सारे सफेद फूलों से बनाई गई है।

बहोत सारे लटकन लगाए गए हैं और आजू बाजू में भी दुकान है और टोकरी में फूल रखे हुए हैं।

रात का समय और एक छोटा सा काथा है जहां पर काफी सारे साउ--